और मेन द्वार पर एक सूट भी लगा हुआ--

यहां पर बहुत से लोग सब्जी लेते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक कृष्ण भगवान की प्रतिमा का फोटो दिखाई दे रहा है।

और कुछ हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

याहां पर स्टेज पर बहुत सी लड़कियां ड्रांस करती हुई नजर आ रही हैं।

यह एक अ बहुत बड़े होटल का फोटो दिखाई दे रहा है।

ऊपर एक सीलिंग फैन भी लगे हुए हैं।

ढाबे के अंदर एक कट्टी एक फर्राटा पंखा भी रखा हुआ दिख रहा है।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

यह एक बड़े से बंगले का फोटो दिखाई दे रहा है।